देखिने नज़ारा दिख ताकितना बढ़िया नज़ारा दिख ता का बात ह बहुत सुन्दर लागल बा।

लिखेल मिलल बी बाप रे घर ह इतना अच्छा बिल्डिंग हम देखले न रही जो देखे के मिलल बा लाइफ में बनत तो होंगे सब।

टंकी बइठावल ह हुने कुदारी ह घर है ई टंकी कितना नीमर बनल ह बड़ी निक लागेला।

इधर बहुत मीत लाग ता बड़ी बढ़िया बा बहुत सुन्दर लाग ता बहुत ठीक बा केतना निक लागैला।

इ काहा ह एक तल्ला ह दू तल्ला ह तीन तल्ला ह।

एकदम पहाड़ी होवे इन सब इतना सुन्दर लगत तवे कितन मीत लग तवेहमरा के देख-देख बड़ी अच्छा लग ता।

लाइन होटल हवे लाइन होटल इधर भी लागता डिस्पोजल थाली पत्तल दिखत हवे।

कितना निक लग तो कितना आराम से सुत्तल बा इत्मीनान से बइठल बा देखे ता ।

बतावा नु कितना बढ़िया चीज़ बनाऊ ले बा देख न देखे वाला देखते रह--